एक गैरेज है यहां पे गाड़ियाँ ठीक होती है गाड़ी की एक टायर निकली हुई है।

काम पे जाते है भूग लगती हे तो खाना खाने आते है फॅमिली के साथ खाना --

यह एक शॉप हे यहां पे चॉकलेट शैम्पू --

ये लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत--

लाल पीले कलर के फूल का माला है।

एक भैया अपना फेस साफ कर रहा है एक भैया दूसरी साइड जिम कर रहा है।

पर बहुत सारे डिजाइन बना रखे हैं लाइट लगा रखी है एक आंटी आ रही है जिसने साडी --